है अंदर भी है और हैं।

पार्टीयों पे जश्न बनाया जा रहा है बढ़िया--

यहाँ पे ऐसा लग रहा हैं कि सोफा रखा हुआ हैं और सोफे के बाजू में खिड़कियाँ खिड़की भीं लगी हुई हैं।

बंगला दिख रहा है कलर भी और खिड़की भी--

ऐसा लग रहा है और अच्छी बड़ी बिल्डिंग हैं।

छोटे छोटे अच्छे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

ये कलर भी काम का दिख रहा हैं छोटे-छोटे--

देखा जा रहा है यहां पे कि वह एक बिल्डिंग है वहां पे एक पर सीढ़ी रखी हुई है आदमी भी--

खड़ा हुआ है वहां पे और पेड़ भी लगा हुआ है।

लोहे की दुकान में बिका भी बिकता भी है और लगता है टेरर की भी दुकान बनाई जा रही है करके एक--

अच्छा दिख रहा है कलर भी मकान में अच्छा सा--

मैं देख रहा हूं कि ग्लोबल स्कूल ही इधर है और बढ़िया लिखा हुआ है।

मेरे को यहां पे दिख रहा है कि रोड भी है और आजू बाजू--

पंख ऊपर देखो तो पंखा लगा हुआ हैं आजू बाजू आदमी ट्रेनिंग ले रहा हैं और फु--